दिखाई दे रही है और पीछे में ढेर सारा डेकोरेशन दिखाई दे रहा है।

इमेज मे एक जिम दिखाई दे रहा है जिसमें नीचे फर्श दिखाई दे रही है और ढेर सारी मशीन -ए दिखाई दे रही है जो लाल रंग की है और कुछ लोग जीप मार रहे हैं।